ये एक रूम है ऑफिस जैसा जिसके दीवार का कलर सफेद रंग का हैं जो केबिन्स बने हुए है वो अ ग्रे कलर --

यहाँ पे एक अं-- विंडो बनी हुई हैजो कांच की हैअंदर कुछ चेयरस रखे हुए हैं कुछ ब्लैक कलर के हैं कुछ वाइट कलर के चेयर हैं।

यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा हैं जो काले कलर का हैं एक पेड़ दिखाई दे रहा हैं उसके बगल में दूर में एक बड़ी सी बिल --

किनारे में जो मिट्टी हैं उसमे छोटे-छोटे घास उगे हुए हैं बीच बीच पर दूर किनारा भी दिखाई दे रहा हैं और जो पानी और बादल हैं वो ग्रे कलर के दिखाई रह--

ये एक बड़ा सा ऑफिस जैसा दिखता है जहाँ पे केबिन्स बने हुए है उसपे सिस्टम रखी हुई है कुछ नोट्स रखे हुए है कुछ बुक्स रखी हुई है।